इस फोटो में एक बड़ा सा मैदान दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में एक बड़ा सा रोड दिखाई दे रहा हैं।

आस-पास में कई सारे पेड़-पौधे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं।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

कमरे में एक बेड रखा हुआ दिख रहा है।

आस पास में कई सारे पेड़ पौधे यहां पर दिख रहे हैं।

आसपास में कई सारे पेड़ पौधे भी यहां दिख रहे हैं।

सामने की ओर एक पुरुष खड़ा हुआ दिखाई दे रहा हैं।

इस फोटो में एक पेड़ दिखाई दे रहा है।

सामने की ओर घड़ी दिखाई दे रहीं हैं।

यहां पर कई सारी साड़ियां भी दिखाई दे रही हैं।

यहाँ पर महिलाएँ भी दिखाई दे रही हैं।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

सामने एक घड़ी टंगी हुई दिख रही है।

इस फोटो में बड़ा सा मैदान दिख रहा है।

मैदान में कुर्सियां लगी हुई दिखाई दे रही हैं।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

इस फोटो में एक बड़ा सा हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है।

सामने की ओर कुर्सियां दिख रही है।

नीचे कई सारी चप्पलें दिख रही है।

इस फोटो में कई सारी कार दिखाई दे रही है।

आस पास में बहोत सारे पेड़ पौधे यहां दिख रहे हैं।

मैदान में कई सारे एरोप्लेन दिख रहे हैं।

सामने की ओर आसमान दिखाई दे रहा है।

किचन में नल लगे हुए दिख रहे हैं।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

आस पास में पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं।

इस फोटो में डेकोरेशन दिखाई दे रहा है।

महिलाएं साड़ी पहने हुए दिखाई दे रही है।

इस फोटो में रिक्शा दिखाई दे रही है।

इस फोटो में केक दिखाई दे रहे हैं।

दुकान में कई सारे कपड़े दिख रहें हैं।

होटल पर त्रिपुत त्रिप हाईवे लिखा हुआ दिख रहा है।

सामने की ओर एक पेड़ भी दिख रहा है।

गुब्बारे अलग अलग कलर के दिखाई दे रहे हैं।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

दुकान में कई सारा सामान दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में पुरुष दिखाई दे रहे हैं।